और इसमे टिफिन भी है और इसमे शीशा का भी --

यहाँ पे मतलब घर भी है और मतलब आगे में बहुत सारा गेट भी लगे हुए हैं।

घर के अंदर एक म्यूजिक सेंटर भी है और एक लड़का म्यूजिक भी बजा रहे है।

एक औरत भी है और पीछे मे लड़के भी है और मतलब मतलब घर भी है और कुछ आदमी बैठे भी है।

यहाँ पे फील्ड है और मतलब भी है। उसके अंदर एक घड़ा है और दो लड़का-लड़की हैं उसमें बैठे हुए हैं।

और बहुत सारे सुंदर घर भी है।

और पीछे में लड़के खरे हैं एक आगे जाके ए.टी.एम. से पैसे निकाल रहे हैं।

लाल रंग के हैं हरे रंग के हैं और ब्लू रंग के भी हैं और उम्म और और बहुत सारे कपड़े भी हैं और बहुत अच्छे हैं।

और बहुत सारे पेड़-पौधे हैं और घर भी बहुत अच्छा से सजाए गए हैं।

और बॉल भी हैं घर भी बहुत अच्छा है और झूमका भी है सोना है।